और बहोत अच्छी सुविधा है यहाँ पर बहोत सारे लोग यहां पर रोज आते है।

और काफी सारे लोग यहां रोज आते हैं।

और काफी लोग यहां पर इसे देखने आते हैं।

और मेहंदी एक दुकान है यहाँ पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए है और काफी सारा फ्रेम यहाँ लगा हुआ हैं।

और काफी सारे लोग यहां पर आते हैं।

और काफी सारा यहां पर पेड़ पौधा लगा हुआ है।

मै देख पा रही हूं यहाँ एक बस खड़ी है जहां पर काफी भीड़ है और लोग फिर भी चढ़ रहे है।

ये एक रूम है जहां पर दो ठो पलंग रखा हुआ हैं और यहां पर कुछ लोग रहते है।

सभी प्रकार के बच्चों के खिलौने हैं यहां पर छोटे से बड़े तक--

और बहोत ही अच्छा दुकान है ये--

जहां पर काफी सारे लोग यहां रोज आते हैं।

और यहां पर लाइट भी लगा हुआ है और ये पेट्रोल पंप रात दिन चौबीस घंटे चालू रहता है।